इसमें हमें एक ऑटो भी दिखाई दे रहा हैं।

इसमें हमें एक स्कूटी भी दिखाई दे रही है।

इसमें एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

इसमें काफी पेड़ पौधे हैं इधर से दो आदमी आ रहे हैं।

उसके गले में ईरफ़ोन भी हैं।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

इसमें हमें एक बाल्टी भी दिखाई दे रही है उसका कलर ब्लू है।

काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं इसमें दारू की बोतल भी दिखाई दे रही--

एक गाड़ी भी जा रही है।

इसमें हमे एक बहोत बड़ा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।